यख मा जी एक बड़ु बारिकु झरना करा यख मा जी पाणी बहोत तेज गति मा जी छा भेण लग्युं तेजी मात्रा मा जी छा भेण लग्युं।

छोटा छोटा पौधान। यख मा जी एक इमारत करा ये पर टीन कु छप्पर करा लग्युं। यख मा जी कई सारा हरयां भरयां डाला भी छन।